इस पिक्चर में एक औरत है।

ये वो येलो साड़ी पहन के इधर आ रही है और एक अह एक

इस इमेज में चार ए_एन_एम हैं।

और दो कुर्सी इधर है एक कुर्सी इधर है।

ब्लू कलर का चादर बिछा हुआ है इधर सीढी है बहोत सारा चप्पल टंगा हुआ है।

और बहार में एक बोड है व्हाइट कलर का--